इस फोटो में सामने की तरफ शीशे दिखाए गए हैं।

शीशों के सामने दो कुर्सियां पड़ी हैं।

मैदान में हरी घास लगी हुई है।

इस फोटो में किसी कमरे का दृश्य दिखाया गया है।

पूल में एक बत्तक चोंच फैलाए --

शादी पार्टी का दृश्य दिखाया गया है।

टेंट को लाइटों व फूलों से सजाया गया है।

सामने की तरफ एक महिला की--

इमारत में लाइटें जल रही है।

शीशा के सामने एक नीले रंग की--

सामने की तरफ एक एग्जास्ट भी लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी मॉल का दृश्य दिखाया गया है।

सामने की तरफ कुछ लोग मॉल में टहलते हुए नजर आ रहे हैं।

इमारत के सामने हरि घास का मैदान भी है।

म्यूजियम में कांच की अलमारियां बनी हुई--

अलग अलग तरह के पुराने सामान रखें हुए हैं।

सलाद व चावल भी रखा हुआ है।

इस फोटो में रेल की पटरी दिखाई गई है।

मंदिर के बाहर एक चबूतरा है।

चबूतरे पर एक बाल्टी रखी हुई है।

इस फोटो में किसी कैफे के सामने का दृश्य दिखाया गया है।

कैफे के अंदर छत पर कुछ लाइटें लगी दिख रही हैं।

सामने की तरफ एक ए_सी भी लगा हुआ है।

एल_ई_डी स्क्रीन पर कमिंग सून लिखा हुआ है।

इमारत में जगह जगह पर एसियां भी लगी हुई हैं।

सामने की तरफ एक तराजू भी रखा हुआ है।

अलग अलग तरह की मिठाइयां रखी हुई है।

पार्क में घास से एक जानवर की आकृति भी बनाई गई है।

कुछ लोग गाड़ियों के बगल में खड़े होकर बात कर रहे हैं।

तेल भरने के लिए अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं।

कुछ मजदूर दिखाए गए हैं।